इस फोटो में हमको एक कॉफी शॉप जैसा दिखाई दे रहा है।

फोटो में हमको छोटा सा एक दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां में बाहर में चिप्स ये सब भी निकाल के है।

और कार में जो नंबर प्लेट भी लगाके हैं।

पेर में जो पर्पल कलर का फूल दिखाई दे रहा है और सामने में गेट है।

और आगे का एंट्रेंस का कलर जो वाइट है।

ऊपर में बहुत सारा चॉकलेट्स रखी है जैसे कि डेयरी मिल्क किटकैट ओरियो बिस्किट्स ।

फिर आगे में जो गेट है सामने में ही एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कि अपना फोन चला रहा--

ए ओ दुकान में जो अलग अलग रंग का बैलून सब लगा के है।

यहां में सामान रखने के लिए कार्डस बनाके है।

उसके बाद वॉल के लिए जो इंटा से बना के दिखाई दे रहे हैं वाल का आगे भी इंटा है।

उसके बाद दो यहां तो में बहुत ज्यादा खाने का चीज को भी बाहर में टंगा की।

यहां में साड़ी को खोल के देख रहा है फिर ये साड़ी जो ब्ल्यू कलर है।

जोकि वुडन सोफा है और यह सोफा के ऊपर में कुशन यह सब रके हैं।

नीचे में बैठने के लिए पीरा भी रखें।

यह फोटो में हमको तीन लड़का दिखाई दे रहे हैं।

नीचे में जो बहुत ज्यादा ईटा दिखाई दे रहा है।

यहां में जो गाड़ी सबको जो ला के है।

एक खराब गाड़ी है सफेद कलर का उसको मैकेनिक जो ठीक कर रहे--

ऊपर में जो पंखा दिखाई दे रहा है।

मे भी काला कलर का रंग लगा के हैं।

और बहुत ज्यादा फाइलें सब रखे हैं।

हमें चप्पल रखने के लिए जो कार्ड से बना के हैं।

ये फोटो में हमें बड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है।

और साइड साइड में जो ग्रीन ग्रास है छोटा छोटा से।

ये फोटो में हमको लॉन्गडिंग का जनरल ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक लड़का है वह अपना कैमरा ऑन करके इसको खींच रहा है।

फोटो में हमको लीची दिखाई दे रहे हैं लीची का कलर रेड और थोड़ा येलो है।

उसके बाद आराम से कुछ बना के है रेस्टोरेंट में टेबल सब रखे हैं।

और पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ में जो पत्ता है उसका कलर ग्रीन है।

ये फोटो में जो हमको एक टिना का घर दिखाई दे रहा है।